यहाँ कुछ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने टोपी पहनी हुई है और अन्य चीजे लिए हुए बड़े-बड़े ढोलक दिखाई दे रहे हैं चौड़े-चौड़े और भी अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की बहोत सुंदर है कलरफुल है सफेद लाल नीली इत्यादि कलर की है।

काउंटर दिखाई दे रहा है जिसपे चॉकलेट पेन टॉफी इत्यादि चीज़ें रखी हुई हैं। टॉर्च दिखाई दे रही है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो के पेपर हाथ में लिए पढ़ रहा है।

दर्शक देख रहें है खम्बे दिखाई दे रहें हैं ऊपर कुछ कपड़े दिखाई दे रहें हैं पिंक कलर के सफ़ेद हरा।